बाहर बहोत सारे बैग टंगे हुए हैं अलग अलग कलर के।

पता चल रहा है कि यह एक पब्लिक शौचालय है।

वहां पर एक लड़कें ने ब्लैक कलर के शर्ट पहनी हुई है।

जोकि पढ़ाई कर रहे हैं।

तस्वीर में एक गौशाला को दिखाया गया--

इसमें बहुत साफ पानी गिर रहा है।

येलो कलर की जे_सी_बी खड़ी हुई है पीछे रेड कल --

रिक्शो के द्वारा व्यक्ति आ जा रहे हैं।

इसके जार जार जाल लगा हुआ है जिसका कलर ब्लैक है।

यह एक अम्मम्म कार शोरूम लग रहा है।

नीचे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

वहां पर एक नीम का पेड़ है।

तस्वीर के माध्यम से दर्शाया गया है कि यह एक क्लास रूम है।